मुझे एक किराने की दुकान दिखाई दे रही है उसमें मुझे चिप्स के पैकेट दिख रहे हैं।

और मुझे कुछ फत्तर दिखाई दे रहे हैं खुला हासमान दिख रहा है।

मुझे एक गोडाउन दिखाई दे रहा है पास में एक गार्डन दिख रहा है।

कार में मुझे एक फोटो दिख रही है मुझे एक आदमी दिख रहा है।

और मुझे भगवान जी की फोटो भी दिखाई दे रहीं हैं।

मुझे एक जिम दिखाई दे रहीं हैं जिम मे कुछ मशीनें दिखाई दे रहीं हैं।

मुझे एक दुकान दिखाई दे राखी है दुकान में कुछ मूर्तियां दिख रही हैं मुझे मंदिर दिखाई दे रहा है।

जो पानी से धोई जा रही है मुझे एक आदमी दिख रहा है व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट रखा पहन उसने।

जो कुछ सामान लेके खड़ी है मुझे कुछ पूजा का सामान दिख रहा है।

मुझे बहोत सारे मकान दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे पेड़ दिख रहे है।

एक रास्ता दिखाई दे रहा है कुछ लोग दिख रहे है लाइट के खंभे दिख रहे--

कुर्सी दिख रही है और कुछ सामान दिखाई दे रहा है।

पंखा दिखाई दे रहा हैं मुझे कुछ लोग दिख रहें हैं।

सब्जी दिख रही है आलू मटर की सब्जी दिख रही है प्याज--

मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे सड़क दिख रही--